इस इमेज में त्रिभुत दुग्ध पदक सरकारी संग लिमिटेड मज़फ्फरपुर डेरी का --

एक पावर हाउस है और यहाँ पे कई सारे छोटे-छोटे जा --

जैसे भो भोजन समाज मे मिलते है ।

काले रंग का है और बहुत ही शानदार --

और इसके सामने एक बाउंड्री भी है।

जो चारों तरफ से घिरा हुआ है प्रकाश से।

रिक्शे पर बैठे हुए है और ऊधर एक साइकिल सवार --

झाड़ियों वाला पौधा भी लगा हुआ है।

इस इमेज में एक कोचिंग के बाहर का सीन लिया गया है।

एवं दसवीं ए के क्लास चलते है और यहाँ ग्यारवीं एवं बारवीं जे से--

झुरियाँ भी लगलगी हुई है ।

हेल्थ में काफी सुधार हो सकती है।

उधर एक व्यक्ति अपने एक्सरसाइज कर रहा है और कुछ व्यक्ति अपने माथे पर हाथ दे कर खड़े --

और कई सारे बुक्स भी इसमें रखे हुए हैं और यहाँ पर कई तरह के समान मिलते हैं पढ़ने के।

और उसके बगल में एक महादेव-पार्वती का मंदिर भी है और उसमें एक पुजारी भी --